ती दिखाई दे रहे है रोड के किनारे मकान भी दिखाई दे रहा है और खंबे भी दिखाई दे रहे है खम्बे पर तार भी दिखाई दे रहा है।

गेट बंद दिखाई दे रहा है दो हाथि बने दिखाई दे रहे श्रीनि दिखाई दे रहे है मंदिर सफेद कलर के दिखाई दे रही है ओर--

बाबा अम्बेडकर की दिखाई दे रही है प्रतिमा के सामने बड़े - बड़े पेड लगे दिखाई दे रहै है।

जैसा कि देख पा रहै है एक सिटी दिखाई दे रही है उस सिटी में बहोत सारे मकान दिखाई दे रहै मकान --

दिखाई दे रहा है रोड भी दिखाई दे रहा है कार खड़ी दिखाई दे रही है दो से तीन कार दिखाई दे रही है एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

जैसा की देख प् रहे है एक पुरनी सी हवेली दिखाई दे रही है हवेली के बड़े-बड़े गेट दिखाई दे रहे है हवेली काफी पुरानी दिखाई दे रही है।